और वह दो व्यक्ति जा रहें हैं एक व्यक्ति रेड कलर का बैग रखा हुआ है और दुसरा व्यक्ति ऐसे ही पैदल चल रहा है।

आसमान दिख रहा है दीवाल पर हल्की-हल्की घास भी है।

ये एक धर्मशाला है जहां पर बहुत से साधु बैठे हुए हैं और जिन्होने ऑरेंज कलर का वस्त्र पहना हुआ है।

यह एक झरना है झरने मे से पानी आ रहा है वहाँ पर चार व्यक्ति है जो कि तीन व्यक्ति खड़े हुए है एक व्यक्ति बैठा हुआ है।

बहोत ऊंचा वत्थर है जहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है।

जिसने डिस्टेंबर कलर की टी-शर्ट पहन रखी है और चस्मा लगा रखा है जिसका कलर ब्लैक है।

बहोत सारे कप रखे हुए हैं ब्रेड रखे हुए हैं एक लड़का खड़ा है जिसने जर्किन पहनी है जिसका कलर ब्लैक है।

यह फत्थरो से बनी एक गुफा है जहाँ पर यलो कलर की सारी मे एक महिलाए झुकी हुई है।

यह एक स्टैशनेरी शॉप है इस के रैकों मे बहुत सारी बुक्स रखी हुई है और एक लेडिज ओर तीन बच्चे बैठे हुए हैं ।

दो पत्थर है जहां पर दो व्यक्ति बैठे हुए है एक लेडिस एक महिला है लेडिस के ड्रेस का कलर मल्टीकलर -----